मुझे घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे बहोत सारी कुर्सियां दिखाई दे रही है।

फोटो में मुझे घर दिखाई दे रहा है।

फोटो में मुझे रोड दिखाई दे रही है।

दरवाजा दिखाई दे रहा है।

फोटो मे मुझे पोस्टर दिखाई दे रहे है।

फोटो में मुझे मैदान दिखाई दे रहा है।

इस फोटो मे मुझे प्रेंच दिखाई दे रहीं हैं।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

फोटो में मुझे पिज्जा का पोस्टर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे पत्थर की चट्टान दिखाई दे रही है।

फोटो में मुझे मंदिर दिखाई दे रही है।

फोटो में मुझे लाइट और पंखा दिख--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

फोटो में मुझे लाइट दिखाई दे रही है।

फोटो में मुझे कुछ लोग योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे लोहे के पिलर दिखाई दे रहे हैं।